ये कुछ है। अच्छा मतलब कोई रेस्टूरेन्ट है लग रहा है।

यहाँ पे मतलब इसमें जाने में मजा आता है सोचते हैं मतलब जो देखो वो खरीद लो बट पैसे नहीं होते हैं पास में।

बट यहाँ पे ऐ.सी वगेरा लगे हुए है। ऐ.सी दिखाई दे रहे है। इनके घर के भी तो बोहोत अच्छे लग रहे है।

और फिर यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे गाड़ी मतलब गाड़ी के तीन फोटो भी लग रहे हैं। यहाँ पे आपके सोने से पह सोने के गहने --

यहाँ पे बगल में दो शेर हैं जैसे कि एक इस बगल और एक इस बगल और इनके त्रिशूल भी अच्छे लग रहे हैं ये पत्थर जो है ये असमानी कलर के हो गये हैं।

अच्छे लग रहे है यहाँ पे देख के पिंक कलर का बहुत प्यारा कलर --